यहाँ पर बेचने भी आते हैं यह पहाड़ के नी बोहोत सारे बड़े-बड़े --

कोई फंक्शन होने वाले है । यहाँ --

बोहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है यह बिल्डिंगो में भी बोहोत से आदमी--